उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर पर स्पोकन ट्यटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर का उपयोग डाउनलोड संस्थापन अपडेट और सॉफ्टवेयर का संस्थापन रद्द कैसे करें
उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर क्या है
यह एक टूल है जो आपको उंबटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर सॉफ्टवेयर के प्रबंधन की अनुमति देता है
आप इसका उपयोग सॉफ्टवेयर को खोजने डाइनलोड करने संस्थापन करने अपडेट करने या संस्थापन रद्द करने के लिए कर सकते हैं
उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर प्रत्येक सॉफ्टवेयर के लिए मूल्यांकन और समीक्षाओं को सूचीबद्ध भी करता है
इस तरह से इसके उपयोग से पहले आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होती है
यह सॉफ्टवेयर हिस्ट्री का रिकार्ड भी रखता है
इस स्पोकन ट्यूटोरियल में हम उबंटू वर्जन 1110 पर उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर का उपयोग कर रहे हैं
ट्यूटोरियल के साथ आगे बढ़ने के लिए
आपका इंटरनेट से जुड़ा होना अनिवार्य है
सॉफ्टवेयर के संस्थापन के लिए आप सिस्टम एडमिनीस्ट्रेटर होने चाहिए या आपके पास एडमिनीस्ट्रेटर के अधिकार होने चाहिए
अपने लॉन्चर से उबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर आइकन पर क्लिक करें
उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर विडों प्रदर्शित होता है
विडों के सबसे ऊपर बायीं ओर पर अल्ल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड और हिस्टोरी बटन्स प्रदर्शित हैं
सर्च फील्ड सबसे ऊपर दायें कोने पर प्रदर्शित है
उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर विडों दो पैनल्स में विभाजित है
बायाँ पैनल सॉफ्टवेयर श्रेणियों की सूची प्रदर्शित करता है
दायाँ पैनल व्हाट्स न्यू और टॉप रेटेड प्रदर्शित करता है
व्हाट्स न्यू पैनल उस सॉफ्टवेयर को सूचीबद्ध करता है जिसे हाल में जारी किया गया है
टॉप रेटेड पैनल उस सॉफ्टवेयर की सूची प्रदर्शित करता है जिसे उच्च उपयोगकर्ता दर्जा मिला है और सबसे अधिक बार डाउनलोड किया गया हो
श्रेणी के माध्यम से सॉफ्टवेयर के लिए ब्राउज करते हैं
बायें पैनल से इंटरनेट पर क्लिक करें
इंटरनेट श्रेणी के लिए इंटरनेट सॉफ्टवेयर और टॉप रेटेड सॉफ्टवेयर की सूची प्रदर्शित है
ध्यान देंकि कुछ सॉफ्टवेयर में टिक मार्क के साथ एक वृत्त है
यह दर्शाता है कि यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में पहले से ही संस्थापित किए गए हैं
इंटरनेट श्रेणी में अधिक सॉफ्टवेयर देखने के लिए अल्ल आइकन पर क्लिक करें
अल्ल सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट श्रेणी में उपलब्ध है विडों पर सूचीबद्ध है
आप सॉफ्यवेयर को बाय नामे बाय टॉप रेटेड या बाय नेवेस्ट फर्स्ट द्वारा भी क्रमबद्ध कर सकते हैं
ऊपर दायें कोने पर ड्रॉप डाउन क्लिक करें
सूची से बाय टॉप रेटेड चुनें
इंटरनेट सॉफ्टवेयर मूल्यांकन के अनुसार व्यवस्थित है
सॉफ्टवेयर की पूर्ण सूची देखने के लिए जो आपके कंप्यूटर में संस्थापित है
इंस्टॉल्ड बटन पर क्लिक करें
सॉफ्टवेयर श्रेणी प्रदर्शित होती है
साउंड एंड वीडियो के सामने छोटे त्रिकोणीय बटन पर क्लिक करें
साउंड और वीडियो के लिए आपके कंप्यूटर में संस्थापित सॉफ्टवेयर की सूची प्रदर्शित होती है
अल्ल सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन से प्रोवाइडेड बाय उबुंटू चुनें
उबंटू द्वारा प्रदान सभी सॉफ्टवेयर्स सूचीबद्ध हैं
अब वीएलसी मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर को संस्थापित करें
विडों के ऊपर दायीं ओर पर सर्च बॉक्स में वीएलसी टाइप करें
वीएलसी मीडिया प्लेयर प्रदर्शित होता है
अब इंस्टॉल पर क्लिक करें
ऑथेंटिकेशन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
अपना पासवर्ड प्रविष्ट करें
ऑथेंटिकेट पर क्लिक करें
प्रोग्रेस बार पर देखें वह दर्शाता है कि वीएलसी संस्थापित किया जा रहा है
संस्थापित होने वाले पैकेड के आकार और संख्या के अनुसार संस्थापन कुछ समय ले सकता है
सबसे ऊपर बटन के द्वारा भी प्रोग्रेस प्रगति सूचित होता है
आप अन्य एप्लिकैशन ऐक्सेस कर सकते हैं जब संस्थापन किया जा रहा हो
वीएलसी संस्थापित हो जाने के बाद यहाँ वीएलसी के सामने एक छोटा टिक मार्क होता है
दायीं ओर पर रिमूव बटन दिखाई देता है
यदि आप वीएलसी के संस्थापन को रद्द करना चाहते हैंतो केवल रिमूव बटन पर क्लिक करें
उसी तरह आप सभी अन्य सॉफ्टवेयर पैकेज को खोज सकते हैं और संस्थापित कर सकते हैं
अब हिस्ट्री देखें
यह हमें हमारे द्वारा किए गए संस्थापनअपडेट्स सॉफ्टवेयर को हटाने सहित
सभी बदलावों को देखने की अनुमति देता है
हिस्टोरी पर क्लिक करें
हिस्टोरी डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
आप अपनी हिस्ट्री को अल्ल चेंजों इंस्टॉलेशंस अपडेट्स और रिमूवल्स द्वारा चेक कर सकते हैं
अल्ल चेंजों पर क्लिक करें
सभी किए गए परिवर्तनों की सूची दिखाई देती है जो कि इंस्टॉलेशंस अपडेट्स और रिमूवल्स हैं
आप निरंतर संस्थापित सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर सकते हैं
आप उबंटू और उबंटू सॉफ्टवेयर के बारे में अधिक जानकारी उबंटू वेबसाइट पर पता कर सकते हैं
हम उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर पर इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर का उपयोग कैसे करें
हमने यह भी सीखा कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड संस्थापित अपडेट और संस्थापन रद्द कैसे करें
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर का उपयोग करके थंडरबर्ड को डाउनलोड करें और संस्थापित करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैंडविथ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट at स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
यह आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एम एच आर डी भारत सरकार द्वारा समर्थित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद